जिसके लिए जो है हर राज्य जो है सरकार के साथ जुड़ी हुई है और जुड़ा ही रहना चाहता है जिससे सभी लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीबों को अधिकतर लाभ मिल रहा --

में जो है ऐसे मंदिर बहुत दिखाई देते हैं और मुझे पूरा अनुभव है कि ये मंदिर जो है साउथी में किसी जगह पे स्थित है।

आज के बच्चे ऐसे बाल कटिंग में अधिकतर ऐसे दिखाई देते हैं और ये सारे जो हैं ये हमारे यहां पे जो है नाई की दुकाने जो होती है वहां पर जा कर के अलग अलग प्रकार की कटिंग दिखाई देती है।

ये एक जिम है और जिम में जो है हर सुबह हर बच्चा जा कर के अपना शरीर के बारे में जो है देखता है और वहाँ पे अपनी बॉडी को बनाने का भी काम करता है और जिम में जाने से स्वास्थ अच्छा रहता है।

ये सड़क जो है ये सड़क है ये पहाड़ों में अधिकतर दिखाई देती है और ये पहाड़ की सड़क है जिसमें जो है चारों तरफ जो है फूलों की घाटी है और बीच में उसमें रोड जैसे बॉडर इलाके पे दिखाई दे--

ये एस.बी.आई बैंक दिखाई दे रहा है और एस.बी.आई बैंक कहीं पे भी हो उसमें भीड़ तो स्वभाविक ही दिखेगी क्योंकि ये हमारे भारत देश का स प्रथम बैंक है और इससे जो है देश विदेश से ए लेन-देन की प्रक्रिया भी होती है।